बड़ा सा ऑफिस दिखाइए दे रहा है।

और मिट्टी का ढेर भी नजर आ रहा है।

कुछ टेबल और सोफे रखे हुए हैं।

एक पोस्टर दीवार पर लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

लेग पीस नजर रखे हुए आ रहे हैं।

टूटा फूटा मकान दिखाई दे रहा है।

घर को डेकोरेट किया गया है।

जहां पर बहोत सारे सामान--

बहोत ही जगमगाती लाइटों की झालर दिखाई दे रही है।

और दो चार आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

बड़ा सा बर्तन दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें ए--

बगीचा नजर आ रहा है।